हमें यहाँ पर सीढ़ी दिख रही है | सीढ़ी में रेलिंग लगी हुई दिख रही है | रेलिंग पे --

हमें यहाँ पर ग्राउंड दिख रहा है | ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहा है |

हैण्ड पंप भी हमको यहाँ पे दिख रहे है।

और बगल में एक आदमी भी खड़ा हुआ है और बहुत बड़े बड़े खम्बे भी बने हुए हैं इसमें से फूल टंगे हुए हैं यहाँ पे |